c ++ में function overloading और overriding के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
function ओवरलोडिंगफंक्शन overriding
हम यह उदाहरणों की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1110
g ++ compiler version 461
function overloading के परिचय के साथ शुरू करते हैं
function overloading का मतलब है दो या अधिक functions समान name रख सकते हैं
arguments की संख्या और arguments के datatype भिन्न होंगे
जब एक function कॉल होता है तो यह आर्ग्यूमेंट की सूची के आधार पर चुना जाता है
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने editor पर code पहले ही टाइप कर लिया है
इस program में हम एडिशन operations क्रियान्वित करेंगे
ध्यान दें हमारी file नेम overload cpp है
मैं अभी code समझाऊंगी
यह iostream हमारी header file है
यहाँ मैं std namespace प्रयोग कर रही हूँ
फिर हमारे पास int की तरह परिभाषित add function है
इसमें हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स passed किये हैं
int a int b और int c;
फिर हम then numbers का एडिशन क्रियान्वित करते हैं और हम value return करते हैं
यहाँ हम function add add overload करते हैं
यह float float की तरह घोषित किया गया है
हम दो आर्ग्यूमेंट्स float d और float e passed करते हैं
फिर हम दो numbers पर एडिशन operation करते हैं
यह हमारा main function है
function main में हम भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के साथ add function घोषित करते हैं
फिर हम variables घोषित करते हैं
यहाँ हम यूज़र से integer values लेते हैं
फिर हम then आर्ग्यूमेंट्स के साथ function add कॉल करते हैं
और परिणाम को variable sum sum में संचित करते हैं
यहाँ हम परिणाम को print करते हैं
अब यहाँ हम यूज़र से floating point numbers लेते हैं
फिर हम दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ add add function कॉल करते हैं
और यहाँ sum sum sum print करते हैं
और यह हमारा return statement है
अब हम program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
निष्पादित करने के लिए type करें g ++ space overload dot cpp space hyphen o space over
enter दबाएं
type करें dot slash over
enter दबाएं
enter three integers प्रदर्शित होता है
मैं 10 25 और 48 enter करुँगी
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है: sum of integers is 83
अब हम देखते हैं: enter two floating point numbers
मैं 45 और 89 enter करुँगी
enter दबाएं
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है:
अब हम function overriding देखेंगे
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
base class base class function को डिराइव्ड class में पुनः परिभाषित करना
डिराइव्ड class function base class function को overrides करता हैं
लेकिन passed किये हुए आर्ग्यूमेंट्स समान हैं
और returntype भी समान है
अब एक उदाहरण देखते हैं
यहाँ function overriding overriding का एक उदाहरण है
ध्यान दें हमारा file नेम override cpp है
अब पूरे code को समझते हैं
यह iostream हमारी header file है
यहाँ मैं std namespace प्रयोग कर रही हूँ
फिर हमारे पास class arithmetic है
इसमें हमने protected की तरह integer variables घोषित किये हैं
फिर हमारे पास public की तरह घोषित function values हैं
इनमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स int x और int y passed किये हैं
फिर हमने values a और b संचित कीं
यहाँ हमारे पास operations की तरह virtual function है
इसमे sum दो numbers add करते हैं और sum print करते हैं
यहाँ हम class बंद करते हैं
अब हमारे पास डिराइव्ड class की तरह class subtract है
यह base class arithmetic को inherits करता है
इसमें हम दो numbers के difference की गणना करते हैं और difference print करते हैं
अब हमारे पास multiply की तरह एक अन्य डिराइव्ड class है
यह भी base class arithmetic को inherits करता है
इसमें हम दो numbers के product की गणना करते हैं और product प्रदर्शित करते हैं
फिर हमारे पास class divide है यह भी base class arithmetic को inherits करता है
इसमें हम दो numbers के division की गणना करते हैं और हम division प्रदर्शित करते हैं
ध्यान दें function का return type समान है और passed किये हुए आर्ग्यूमेंट्स भी समान हैं
अब यह हमारा main function है
इसमें हम class arithmetic का एक object p बनाते हैं
arith class arithmetic का pointer है
फिर हमारे पास class subtract का subt object है
class multiply का mult object
और class divide का divd object
अब यहाँ p को arith के address पर set किया जाता है
फिर हम function values में arguments 30 और 12 हैं
अब हम function operations कॉल करते हैं
यह एडिशन operation करेगा
यहाँ हम subt को arith के address पर set करते हैं
और हम आर्ग्यूमेंट्स 42 और 5 pass करते हैं
हम function operations को दोबारा कॉल करते हैं
यह दो numbers का सब्ट्रैक्शन करेगा
अब हम mult को arith के address पर set करते हैं
और हम आर्ग्यूमेंट्स 6 और 5 pass करते हैं
हम function operations कॉल करते हैं
यह दो numbers का multiplication करेगा
at में हम divd को arith के address पर set करते हैं और हम आर्ग्यूमेंट्स 6 और 3 pass करते हैं
अब हम operations function कॉल करते हैं
यह दो numbers का division करेगा
और यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं अपने terminal पर वापस आते हैं
type करें g ++ space override dot cpp space hyphen o space over2
enter दबाएं
type करें: dot slash over2
enter दबाएं
output इस प्रकार दिखता है
addition of two numbers is 42
difference of two numbers is 37
product of two numbers is 30 और division of two numbers is 2
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
अब overloading और overriding के बीच अंतर देखते हैं
overloading inheritance के बिना हो सकती है
overriding होती है जब एक class दूसरी से inherited की जाती है
overloading में आर्ग्यूमेंट्स और returntype भिन्न होने ही चाहिए
overriding में आर्ग्यूमेंट्स और returntype समान होने ही चाहिए
overloading में function के name समान होते हैं
लेकिन यह उनको passed किये गए आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर भिन्न व्यवहार करता है
overriding में function का name समान होता है
डिराइव्ड class function base class से भिन्न operations क्रियान्वित कर सकता है
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
फंक्शन ओवरलोडिंग
उदाहरण int add तीन भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के साथ और
float add दो भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के साथ
function overriding
उदाहरण virtual int operations और int operations
समान आर्ग्युमेंट और समान रिटर्न टाइप के साथ फंक्शन्स और दोनों के बीच अंतर
एक नियत कार्य में
एक प्रोग्राम लिखें जो फंक्शन ओवरलोडिंग उपयोग करके रेक्टेंगल स्क्वायर और सर्कल के एरिया की गणना करे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
अधिक जानकारी कर लिए कृपया
contact @spokentutorial org को लिखें